दू गो गुम्बद लगी हुई दिखाई दे रही है इसमें स्टार का निशान लगा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहै हैं।

इस इमेज मे हमे वर्धमान आयुर दिल्ली संस्था पावापुर नालन्दा दिखाई दे रहा है यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का इसमे हमे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

और दो तीन बाइक खड़ी हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर हमको और दो तीन पेड़ दिखाई दे रहे है यहां पर हमको उम्म इलेक्ट्रॉनिक की दुकान दिखाई दे रही है यहाँ पर एक टेंपू दिखाई दे रहा है यहाँ पर।

ये हमको गुलाबी कलर का पेंट किया गया है दीवारों में यहाँ पर दो शटर लगी हुई है यह देखने में बहुत अच्छा दुकान दिखाई दे र --

इमेज में हमें एक मस्जिद जैसी दिखाई दे रही है सफेद कलर की इसमें ईट की दीवाल दिखाई दे रही है ये देखने में बहुत अच्छी मस्जिद दिखाई दे रही है यहाँ पर --

इमेज में हमे एक कार दिखाई दे रही है जिसमें बोलेरो लिखा हुआ है।